गाड़ी का रंग लाल और नीला नजर आ रही है।

बागान दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे चाय के पौधा लगाया हुआ है।

और सामने बाइक भी दिखाई दे रही है।

ये फोटो मे मुझे बिल्डिंग घर और कच्चा घर दिखाई दे रहे है।

जैसे पत्ते टमाटर प्याज मिर्चा और थर्माकॉल बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग में कपड़ा सुखाया हुआ और फ्लावर पॉट्स दिखाई दे रही है।

ग्राउंड में बहुत सारे बैम्बू और झंडा दिखाई दे रही--

ये फोटो में मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रही है जहां पर--

ब्राउन रंग का पर्दा भी लगाया हुआ है।

ये फोटो में मुझे एक घर दिखाई दे रही है।